अशोक अपने फार्म से घर आता है और बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत करता है
उसकी पत्नी अनीता उसे देखती है और उसके हाथों और टाँगों के फफोलों पर ध्यान देती है
वह डर जाती है और कहती है कि उसके पति पर देवी ने ये क्या प्रकोप कर दिया
वह अपने बच्चों से शीघ्र ही घर के बाहर जाने को कहती है
माँ और बच्चे घर के बाहर आ जाते हैं और दरवाज़ा बहार से बंद कर देते हैं
इसी बीच उस गांव के अस्पताल की डॉक्टर उनके घर के पास से निकलती है और अनीता को नमस्ते कहती है
अनीता और उसके बच्चों के चेहरों पर चिंता के भाव देखकर वो अनीता से पूछती है क्या हुआ160
अनीता अपने पति पर हुए देवी के प्रकोप के बारे में डॉक्टर को बताती है
डॉक्टर अनीता से कहती है कि वो उसके पति को देखना चाहती है
लेकिन अनीता मना करती है कहती है कि तुमको मेरे पति से नहीं मिलना चाहिए
डॉक्टर अनीता की उपेक्षा करते हुए घर के अंदर जाती है और फिर अनीता हिचकिचाते हुए उसके पीछे जाती है
डॉक्टर अशोक की जाँच करती है और कहती है कि उसे चिकिन्पाक्स हुई हैं
लेकिन अशोक और अनीता नहीं जानते कि चिकिन्पॉक्सचेचक क्या होती हैं160
वो प्रश्न पूर्वक डॉक्टर को देखते हैं
डिजिटल डिवाइड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यहाँ हम बात करेंगे चिकिन्पॉक्स उसके लक्षणों कारणों और क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में
सबसे पहले देखते हैं चिकिन्पॉक्स क्या है160
चिकिन्पाक्स वाइरल इन्फेक्शन है जिसमें शरीर पर खुजली वाले फफोले हो जाते हैं
चिकिन्पॉक्स के टीके रोग को रोकने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं
जिन्हें चिकिन्पॉक्स के टीके लगे हैं उनमे से कुछ लोगों को फिर भी चिकिन्पॉक्स हो सकता है
लेकिन आम तौर पर उन्हें यह इतना ज़ोर नहीं पकड़ता है
सामान्यतः चिकिन्पॉक्स मामूली बीमारी है और घातक नहीं है
लेकिन कभी कभी यह गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को अस्पताल जाने की ज़रुरत होती है अन्यथा वह मर भी सकता है
चिकिन्पॉक्स निम्न को प्रभावित कर सकता है गर्भवती महिला नवजात शिशु किशोरों एवं वयस्कों और कम प्रतिरोध क्षमता वाले लोगों को
अगर आपको एक बार चिकिन्पॉक्स हो चुका हो तो सामान्यतः वायरस फिर से वापस नहीं आता है
अगर किसी को दूसरी बार चिकिन्पॉक्स होता है तो उसे शिंगगल्ज़ कहते हैं
अब चिकिन्पॉक्स के कुछ लक्षण देखते हैं
बुखार जो 2 दिनों तक रहता है
लाल गर्म और संक्रमित त्वचा खुजली जो घरेलू उपचार से नहीं जा सकती
चकत्ते जो 2 सप्ताह तक रहते हैं
अब चिकिन्पाक्स का समय अंतराल और संक्रामकता देखते हैं
चिकिन्पॉक्स के फफोले 3 5 दिनों में बनते हैं और 7 10 दिनों में पपड़ी आती है
यह होने के 1 2 दिनों में संक्रामक हो जाते हैं
यह तब तक संक्रामक रहते है जब तक सारे फफोलों पर पपड़ी न आ जाये
यह अत्यधिक संक्रामक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकता है
अब हम चिकिन्पॉक्स के कारणों को देखते हैं
आपको निम्न प्रकार चिकिन्पॉक्स हो सकता है एक चिकिन्पाक्स के फफोले से निकले द्रव को छूने से या अगर चिकिन्पॉक्स से ग्रस्त व्यक्ति आपके सामने खाँसता या छींकता है
खतरा और ज़्याद होता है यदि आपको पहले कभी चिकिन्पॉक्स नहीं हुआ हो और या तो आपने चिकिन्पॉक्स के टीके नहीं लिए हों
अब देखते हैं कि जब हमें चिकिन्पॉक्स होता है तो हमें क्या करना चाहिए
अपने डॉक्टर से परामर्श करके यह निश्चित करें कि यह चिकिन्पॉक्स है न कि मच्छर कीट के काटने का निशान
हल्का भोजन लें
घर का बना हुआ खाना ही बताया जाता है
शुरूआती कुछ दिनों तक प्रत्येक 3 से 4 घंटे में ठन्डे या गुनगुने पानी से नहाएं
नहाने के पानी में नीम की पत्तियां डालें
यह खुजली को कम करती हैं
नहाएं और शरीर को थपथपाकर पोछें
खूब पानी पियें नारियल जौ या कुछ भी जो ठंडा करने वाला हो
संक्रमण फैलने से बचाने के लिए संक्रमित व्यक्ति के कपड़े अलग धोएं
अगर आपको चिकिन्पॉक्स नहीं हुई है या टीका नहीं लगवाया है तो आपको टीका लगवा लेना चाहिए
अब देखते हैं कि चिकिन्पॉक्स के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए
लाल खुजली वाले फफोले को न खुजायें
इससे जीवाणु संक्रमण और निशान हो सकते हैं
दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उनसे दूर रहें
यह इस ट्यूटोरियल के अंत में लता है
चिकित्सकीय सहायता लेना हमेशा उपयोगी होता है
सुनने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
इस ट्यूटोरियल के लिए एनिमेशन आरती और ड्राइंग्स सौरभ गाडगिल द्वारा किया गया है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद